ये पौधा किसका पौधा होगा नहीं जानत हए कितना मस्त खिल जई हैं साइड साइड में पीला पीला पीला भी हैं एक हरा भी हैं लाल भी--